और लोहा का पोस्टर लगाया हुआ है रोड के बीच में बाइक जा रहा है बगल से कार भी जा रही है।

वो आसमान दिख रहे है ऊपर से तार पार --

और सामने में और भी बाइक दिख रही है ठेला है।

और तरफ से घेरा गया हैरेड से पेंट है दीवार और ऊपर में लोहे का रेलिंग भी लगा हुआ है।

व्हाइट कलर के बदला है ब्लू कलर के आसमान है एक लड़का जो है सेल्फी ले रहा है।

यहां पे चार बच्चे दौड़ रहे है जो की पीले कलर का व्हाइट मिट्टी तक पहने है ग्रे भी पहना हैं।

और एक बड़ा-सा घर दिख रहा है घर के आगे में दरवाजे हैं जिसमें कि ग्लास के दरवाजे लगे हैं।

में एक और जो है कुछ तोड़ रहा है लोग।

एक शक्स जो है ब्लैक कलर के शर्ट पहने को सिखा रहा है।

बहुत सारे काले-काले पत्थर है आसमान दिख रहा हैं।

नीचे में है जो मैट उसमें बहुत सारे लाइट जल रहे है लड़की जो है रेड कलर की लेहंगा पहनी है।

जिसपे की तार लगाया गया है रेल के लिए सामने मे एक प्लेटफॉर्म हैं यहां जाने के लिए।

आपके पास में है नीचे बहुत तरह घर जमे हुए हैं ह रे-हरे कलर के छोटे-ब--

बहुत सारा लाइटिंग लग रहा हैपीले कलर की लाइट चालू है पीले कलर का सजाया गया हैदुर्गा माता का पूजा व्हाइट और रेड कलर की साड़ी पहनया हुआ है।

यहां पर कटा सारा काम चल रहा है एक जो है रड पकड़ के खड़ा है और दोनो मिलके मसाला डाल रहे है।

सामने में एक बड़ा सा घर दिख रहा है उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है उसपे लिखा है ट्रांसफॉमर्स ।

और यहां पर जो हैजो तार के पेड़ दिख रहे है एक रोड पास हुआ है उसके किनारे-किनारे बहुत सारे घास जमा है आसमान दिख रहे है जो की ब्लू कलर --

लोखोतिया कंप्यूटर सेंटर है बहुत सारे पेड़ भी हैजो के हरे-हरे कलर के हैंबाहर में रोड है।

बाइक लगा हुआ है जो बहुत सारे लंबी भीड़ लगा है पंडाल बना हुआ हैएक पेड़ भी दिख रहा है हरे कलर --

बड़ा सा ऑफिस है इसमें जो फैन लगे हुए हैंऊपर बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैंऔर एक टी.वी. लगा है।